यह एक कक्षा का दृश्य दिखाई दे रहा है।

लाल रंग की कालीन और हरे रंग का पायदान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक रेस्टोरेंट बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसका नाम शिव शक्ति है।

रेस्टोरेंट के बाहर कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं। पेड़ भी अस्त व्यस्त हव व्यव अवस्था में रख लगे हुए हैं।

इसमें बहुत सारा धनिया केले टमाटर गाजर व अन्य सब्जियां रखी हुई है।

इसमें वाशिंग मशीन और फ्रिज वगैरा कूलर वगैरा भी रखे हुए हैं।

और काफी इलेक्ट्रॉनिक तार वगैरह दिखाई दे रहे हैं प्रिंटर मशीन भी रखी हुई है।

बड़ी बड़ी चट्टानों में से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

आस पास काफी सन्नाटा हो रहा है।

कई लोग शांत खड़े हुए और बैठे हुए भी हैं।

यह एक डेंटिस्ट की शॉप दिखाई दे रही है।

सामने का पेड़ सुखा हुआ दिखाई दे रहा है।

भूरे रंग की मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

सामने दीवार पर कुछ पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

कुछ पत्थर और कुछ जानवर भी इधर उधर हैं।

आस पास ऊपर बिजली के तार भी जा रहे है।

का स्थान काफी शांत दिखाई दे रहा है।

उसमें लाल रंग की एक कार खड़ी हुई है।

और कई ओ अन्य उपकरण भी लगे हुए हैं।

जिस पर एक नाग बना हुआ है।

जिसके ऊपर कई क्लासेस भी चलती हैं।

बहुत सारा फर्नीचर भी पड़ा हुआ है।

समी में लाइटे जल रही हैं काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है।

यह नाई की दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।